और दो महिला इसके फोटो खींच रही है जिम की।

इसके पास हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं।

ड्राइंग कॉपी अच्छी ड्राइंग बनाई हुई है।

जिससे की कोई चढ़े ना--

यहां पर काफी सारी भीड़ भी हो रही है।

ये भी कुछ दुकानें है किसी चीज की।

और यह मशीन इसको ऊपर चढ़ा गई है पिरल भी है पिलर भी है सामने।

काफी अच्छी लाइटिग हो रही है।

एक्सरसाइज करने के लिए मशीन बनी हुई है।

यहां पर अलग अलग प्रकार की फीस मिलती है।

यह कोई टाइल पत्थर की दुकान है।

तीन चार मंजिल बिल्डिंग भी बनी हुई है।

सामने एक टावर भी है एक ब्रिज भी चमक रहा है सामने।

और मंदिर काफी खूबसूरत बनाया है।

और इस पे भी पिलर भी लगे हैं जिसपे गोल्डन कलर फिरा होया है।

प्लांट भी लगाया है प्लांट --

ये कोई बैंक्वेट हॉल है है।

एक कुर्सी भी है कुर्सी पे एक बंदा फोटो खींचा रहा है।

य्वु कोई गाड़ी ठीक करने की दुकान है।

बड़ा सा पेड़ भी खड़ा होया है छावें के लिए।

यहां पर टेंपू चल रहे हैं काफी सारे--

यो कोई कपड़ों की दुकान हैं।

र यहां पर बच्चों के बड़ों के और लेडिस महिला सबके कपड़े मिलते हैं यहां पर।

ये कोई होटल या रेस्टोरेंट है।

इधर कुर्सी भी है ऐं लकड़िया की मेज फोल्ड कर रखी है।

एक्टिवा भी खड़ी हुई है सामने एक बंदा भी खड़ा हुआ है इसके।

और नीचे साइड लोहे की चद्दर है।

और यहां पर एक फ्रिज भी रखा है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक पानी की बोतल भी रखी हुई है।

किसी चीज की मूर्ती हैं।

और जिम में एक बंदा शीशे के सामने फोटो खींचा रहा है।

पीछे लाइट भी रखी है रात का।